यहाँ पे हर जगह बम फटाके रखे हुए है यह दिवाली का टाइम है इसलिए फोटो दिख रहा है इसमे पुरे में फायरक्रेकर है शार्ट स्काई है और यहाँ सायरन बम फटाके रखे है यहाँ बहुत सारे बम फटाके रखे हुए है ।

इस फ़ोटू में पूरे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं ये एक पार्क के अंदर का रास्ता है यहाँ पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है ।

और ये पंजाब नेशनल बैंक है ये भारत सरकार का उपक्रम प्रधान कार्यलय राम्भंग का विभाग मुरादाबाद का है यहाँ पर एक अंकल खड़े है वाइट कलर की शर्ट पहेन कर --